और यहां पर बहुत ही हरे भरे पेड़ पौधे भी हैं।

एक व्यक्ति जो लाइटे खींच रहा है।

जिनमे बहोत सारा सामान लोड होता है।

इसके पास में एक और दुकान भी है।

यहां पर बहुत सारी लड़कियां एक नृत्य कर रही हैं।

यहां पर ऊपर पंखा चल रहा है और नीचे मेज पर एक बोतल पानी की है।

यहां पर एक बहुत ही बड़ी नहर आ रही है और सामने की ओर ही --